एक टेबल रखी हुई है।

इस चित्र में मुझे एक सड़क दिख रही है जिसके ऊपर ऑटो रिक्शा खड़े हुए हैं।

इस चित्र में मुझे दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं और एक ट्यूब रखा हुआ है।

बॉक्स के ऊपर शहनाज हुसैन नेचुरल गोल्ड लिखा हुआ है।

इस चित्र में मुझे एक कमरा दिख रहा है जिसमें नीले रंग की दरी बिछी हुई है।

इस चित्र में मुझे एक खाली हॉल दिख रहा है।

इस चित्र में मुझे एक मस्जिद दिख रही है।

इसका दरवाजा भी हरे रंग का पुता हुआ है कुछ पेड़े लगे हुए हैं।

काफी प्रकार की साड़ियां टंगी हुई हैं।

इस चित्र में मुझे एक तालाव दिखाई दे रहा है।

मंदिर की सफीलें स्टील की बनी हुई हैं ।

इस चित्र में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है।

जो कि सफेद रंग का पुता हुआ है घर के बाहर कुछ पेड़े लगे हुए हैं।

दुकान के अंदर कई लोग बैठे हुए हैं दुकान के बाहर दो आदमी खड़े हुए हैं।

इस चित्र में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर कई प्रकार की चीजें रखी हुई हैं।

दुकान का नाम कुमार किराना स्टोर है।

कुछ बच्चे स्विमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस चित्र में मुझे एक खाली हॉल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर--

नर्सरी के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है।

इस चित्र में मुझे एक लहंगे की दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर कई प्रकार के लहंगे रखे हुए हैं।

चादर वाइट कलर की है।

इस चित्र में मुझे एक बड़ा ग्राउंड दिख रहा है।

इस चित्र में मुझे एक क्लास दिखाई दे रही है जिसके अंदर काफी ज्यादा बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं।

इस चित्र में जो एक घर दिखाई दे रहा है जो कि काफी पुराना है।

जिसके बीच में एक पिलर बना हुआ है।

इस चित्र में मुझे एक मेला दिखाई दे रहा है।